यहां प्यारे प्यारे दो तीन घर है।

यहां एक प्रतिमा लगा हुआ है जो गोल्डन कलर का है।

बहोत सारे कुर्सी भी लगे हुए है।

मंदिर के पीछे बहुत सारे पेड़ हैं।

यह मंदिर बहुत प्यारा सा बना हुआ है।

यहां बाहर में एक डस्टबिन लगा हुआ है।

यह एक स्विमिंग पूल है।

बीच रोड पे एक ऑटो चल रही है।

पीछे दीवार पे गणेश भगवान की प्रतिमा लगी हुई है।

यहां गाड़ी लगा हुआ है बैलून भी बिक रहा है।

यह एक सोना की दुकान है।

रोड के पीछे बहुत अच्छा पहाड़ का दृश्य है।

ये एक घर का फोटो है।

घर का अंदर का एक प्यारा सा फोटो है।

इसके बीच में एक मैडम है जो बच्चे लोगों को गाइड कर रही है।

यह एक टायर की दुकान है।

यहां बहोत सारे टायरे लगी हुई है।